यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है गेट के बाहर दो डस्टबिन है गेट के सामने कुछ गाड़िया आना उना आना-जाना कर रही है।

सामने पेड़ लगा हुआ हैं एक रोड गया हुआ हैं कुछ बिल्डिंग्स हैं पेड़ हैं और--

एक गेट खुला हुआ है गेट के सामने में बड़ा सा घर के अंदर बैटरी लगा हुआ है लंबा सा एक

यहाँ डैम है बहुत बड़ा सा डैम में दोही डैम खुला हुआ है।

यहाँ पर एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ हैं आस-पास छोटे-छोटे घास हैं पेड़ हैं हरे-भरे ।

वो आ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया हैं बाहर साइड --